ये देखिये भाई लोहे की कारखाना है। मजदुर लोग यहाँ दिन रात काम करने के बाद भी सही से तनखा नही मिलता है। इसमें सरकार से अनुरोध है की ये भाई साहब को मेहनत मजदूरी का लाभ उठाने में मदद करें।